काफी स्वादिष्ट दिखाई दे रहे हैं और उनके नीचे पेपर बिछे हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी स्वादिष्ट मिठाइयां रखी हुई हैं। सफ़ेद कलर की लड्डू दिखाई दे रहे हैं ओ जो काफी स्वादिष्ट हैं।

हिरण अनेक मात्रा में दिखाई दे रहे हैं काफी अधिक हिरण दिखाई दे रहे हैं यहां पर बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं कई अ--

पर एक ऑफिस दिखाई दे रहा है जिसमे चेयर बेंचे नजर आ रही हैं। यहाँ पर फेन भी दिखाई दे रहा है। लाल कलर के पर्दे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ दिवालो पर कई पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कई कारें दिखाई दे रही हैं कार सिल्वर और काले कलर की दिखाई दे रही है और यहां पर एक व्यक्ति झोला पकड़े हुए भी जाता हुआ नजर आ रहा है।

और यहाँं पर बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं और यहाँं पर दो पुलिस कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने वर्दी पहनी रखी हुई है।

बसें दिखाई दे रही हैं। एक पीले कलर का रिक्शा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर दो तीन व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिनमें से एक व्यक्ति ने बेग टांग रखा हुआ है। एक व्यक्ति ने हाथ में बेग रख रखा हुआ है।

अंदर काफी बड़े-बड़े से पेड़ दिख रहे हैं जो कि नीम के पेड़ हैं। यहां प नीले कलर का आसमान दिखाई दे रहा है। टीन सी दिखाई दे रही है औ यहां पर बड़ा सा एक गेट दिखाई दे रहा है जो --

एक हो होटल दिखाई दे रही है जहाँ पर कई सफेद कलर की कुर्सी और बेंचे दिखाई दे रही हैं और यहां पर एक व्यक्ति साइड में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। एक --

मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा है और बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके साइड में एक आद बैनर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है। लाइट का खंभा भी दिखाई दे रहा है। आसमान दिखाई दे रहा है। पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और यहां पर कई व्यक्ति दिख --

दुकान दिखाई दे रही है दुकान में फ्रिज रखा हुआ दिखाई दे रहा है और कई सामान दिखाई दे रहा है जैसे बिस्कुट का पैकेट दिखाई दे रहे हैं और कई मसाले दिखाई दे रहे हैं और कार्टून बॉक्स दिखाई दे रहा है।